और तीन चार लोग है जो की मछली खरीदने आया है एक बूढ़ा आदमी मछली छू के देख रहा है और तराजू में मछली नाप रहा है एक आदमी --

यह एक यह एक मछली की दुकान है जिसमे एक बूढी औरत एक और आदमी --

बस को फूलों से सजाया गया है दोनों साइड बस के आईने है एक पेड़ है साइड में।

यह एक सब्जी मार्केट का दुकान है मछली मार्केट का दुकान जगह है जिसमें की दूकानदार मछली बेच रहे हैं और लोगो मछली --